जैसा की आप देख रहे हैं एक नांव है जिसमे एक लड़का खड़ा है इसमें निचे बहुत सा पानी ऊपर में बादल है बहुत सारे बादल सफ़ेद-सफ़ेद बादल जो की बहुत की अच्छा दिख रहा है।

जो की बहुत ही खूबसूरत दिखा रहा है बहुत ही अच्छा दिख रहा है जो बहुत ही बड़ा-बड़ा पेड़ बहुत ही अच्छे-अच्छे पत्ते फैले हुए हैं जो की बहुत ही अच्छा दिख --

पोथी बहुत गुसल जगह है एक समने यह लड़का जो बहोत अच्छा दिखाई दे रहा है।

ऊपर का आसमान का कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है और लाल कलर तो और भी अच्छा लग रहा है और एक आदमी इधर देख रहा है दूसरा आदमी उधर देख रहा है जो बहुत अच्छा--